और यहां साइड में इसको पाथ बनी हुई हैं जिसमें एक औरत झाड़ू लगा रही है।

केक पे लिखा हुआ है अवाध अवाध फूडस और साइड में भी एक पोस्टर लगा --

और वहां सा दूर से कुछ पेड़ वेड़ नजर आ रहे हैं और यहां दीवार पे ये--

एक बंदा चढ़ा हुआ है जोकि छोटा सा बच्चा चढ़ा हुआ है जोकि ऊपर तक गया है।

और इस शॉप के उपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें हिंदी में कुछ लिखा हुआ--

ये एक तबेला जैसा लग रहा है जिसको जो इर्द गिर्द से आयरन रॉड से बांधा हुआ है।

ये एक मस्जिद की फोटो है जहां व्हाइट कलर का किया हुआ है।

और ये शॉप है जिसको ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें हिंदी में कुछ लिखा गया --

और वहां उस पे कुछ अम्म गन जैसी दिख रही है और वहां पे दो बंदे हैं जिनके हाथ में भी गन है।

अ बीच में स्काई ब्लू कलर का ही नजर आ रहा है ऊपर ये कुछ वायर जैसे दिख रहे है।

ये तस्वीर एक अ पुरानी घर मंदिर जैसी लग रही है।

ये एक सड़क की फोटो है वहां से कुछ दुकाने बुकानें भी दिख रही है जो कि बंद है।

सड़क पे एक अ ट्रक जैसी दिखती है जो की गाड़ी को अपने साथ चला रही है।

वहां पे भी पेड़ नजर आ रहे हैं और साइड में कुछ मकाने वकाने भी दिख रही है।

इसका दीवार जो है वो व्हाइट और ब्राऊन कलर का है और इसपे अच्छासा गेट लगा हुआ--

ये एक शॉप की फोटो है जिसको ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। जिस पर रेड कलर से हिंदी में कुछ लिखा गया है।

बाहर एक बंदा भी दिख रहा है साइड में इसको सीढ़ी बनाई हुई है।

में बहुत अच्छी शॉप है एम_एस करियर भी लिखा हुआ है।

और यहां पे एक मार्केट की फोटो है जहां पे कुछ शॉप दिख रही है।

और इसके आंगन में भी कुछ थोड़ा थोड़ा घास टेडा हुआ है।

ये शॉप की फोटो है जिसका नाम है न्यू नाइस थिंक ।

जो इन बंदों पे बच्चों पे नजर रखी हुई है और वहां साइड में भी कुछ बंदे है ड्राइंग कर रहे है।

और सामने जिसपे रेड और येलो कलर का किया हुआ है वहां पर कुछ लोग भी हैं।

एक छोटी लड़की है और एक बंदा है जिसने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

व्हाईट कलर की शर्ट पहनी हुई हैं ग्रीन कलर का पेंट पहना हुआ हैं और इर्ध गिईंध इसपे पेड़ वेड़ नजर आ रहे हैं।

ये एक बेकरी शॉप है जहां पर मिठाईयां वगैरा बेच रहे है वहां पे बहोत किस्म की मिठाई है जैसे रसगुल्ले हैं।

और यहां साइड में वेट मशीन भी है जिस पर खाने पीने की चीजों का वेट होता है।